नीचे कारपेट बिछाया हुआ है पूरा मेज साफ-सुथरा और बढ़िया लग रहा है ।

और ये शाम का समय हैं सभी लोग जा रहे हैं बड़ी बड़ी बसे हैं कारे हैं।

ये चर्च के अंदर की तस्वीर हैं जहाँ पे दो लाइन में बहोत सारा ब्रेंच लगा हुआ हैं ऊपर पंखे लगे हुए हैं और खिड़किया भी हैं।

ये चर्च के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पे चर्च अ बहुत ही बड़ा है और आस-पास बहुत ही मोटे-मोटे और घने से वृक्ष लगे हुए हैं।

एक चर्च हैं और चर्च के दोनों तरफ ब्रेंच लगा हुआ हैं दो लाइन में और चर्च साफ सुथरा हैं दोनों साइड ब्रेंच लगा हुआ हैं बेठने के लिए।

एक बोहोत बड़ा घर है ओर काफी लोग बहुत बड़ा घर है इस मे भी आधा काम चल ही रहा है यह शायद एक लोज जिसमे रहने के लिए बहुत ज्यादा कमरा है।

और बहोत दूर में कुछ घर हैं यहाँ बास वास कुछ मैदान में और खड़ा हैं गड़ा हुआ हैं और मैदान में बालू ही बालू हैं कही-कही पे छोटे-छोटे पौधे हैं लेकिन पूरा मैदान खाली हैं।

ये एक कार जॉन हैं जहाँ पे जो हैं एसेसरिज का सामान सब मिलता हैं और इसमें कार से रिलेटेड सभी पार्ट्स मिलते हैं।

लेकिन हैं मारुति सुजुकी हैं तो बढ़िया कंपनी हैं और अच्छा कंपनी हैं ये मारुतिसीजू--

औरों साइकिल लगा हुआ हैं ठेला लगा हुआ हैं बारिश हो रही है बारिश हो रही है।

और बहुत घना-घना वृक्ष हैं हरा-भरा वृक्ष हैं और भी बहुत ऊचा हैं और मैदान एकदम बड़ा हैं।